मुझे इस फोटो पर ग्रीन मे भी दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर पहाड़ भी दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर चेयर भी दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर टीना भी दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर चर्च के बाहर एक सीढ़ी भी दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर पेड़ पौधे भी दिख रहा है।

मुझे एक मार्केट दिख रहा है।

मुझे गोल्डन पगोड़ा पर एक सितार भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर सीढ़ी भी दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर ढेर सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक पानी का टंकी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर चूड़ी भी दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर पेड़ पौधे भी दिख रहा है।

इस बाइक का कलर रेड दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर पत्ता भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर दो फ्लावर पॉट दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर टेबल भी दिख रहा है।